इसका छत ब्लू कलर का है हम लोग को आगे में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

पानी का बोतल दिखाई दे रहा --

बहुत ज्यादा घास दिखाई दे रहा यहां पर एक खेत जैसा लग रहा --

आगे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है।

ये फोटो में हम लोग को एक सैलून दिखाई दे रहा हैं यहां में दो ठो बच्चा दिखाई दे रहा है।

मतलब वो फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।